ये शीट से बना हुआ छोटा सा वर्कशॉप है उसके बगल में बड़ा पेड़-पौधा है।

उ जे एक बेरिंग सेंटर का दृश्य है जहां गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह मिलते हैं।